जो की वाइट कलर से पेंट है और नीचे हमे ब्लैक कलर में लोहे का भी बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है ।

जिसमें बहुत सारे वेकूम भी दिखाई दे रहे हैं बाइक्स रखी हुई हैं यहाँ पर।

ग्रीन कलर की घास पे हमें दिखाई दे रही है कहीं जगह पर हमें दूर से पानी भी दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है।